यहाँ पर अनेक सारे ग्राहक आते होंगे कपड़ा ले जाने के लिए।

यह बाजार बहुत बड़ी है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

यहां पर एक मैम भी बैठी हुई है।

यह कपड़े की दुकान है यह दुकान बहुत बड़ी है।

यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं बहुत ही सारे ग्राहक आए हुए हैं।

यहाँ से यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे है।

बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग भी है वह बिल्डिंग में अनेक सारे कमरे होंगे।

यहां यह दुकान बहुत बड़ी है यह दुकान में बहुत सारे बैलून भी टांगे हुए हैं।

यह मंदिर में गणेश जी का चित्र रखे गए हैं।

जो कि काफी सुंदर प्रोजेक्ट एक तैयार हो चुकी है।

यह गेट के नीचे बहोत से सुंदर डिजाइन दिए गए हैं।